पेड़ का कलर हरा आसमान का कलर सफेद है फर्श का कलर स्लेटी है।

सामने मूर्ति है जिसके छत्र का कलर सफेद है फर्श कलर पीला है।

बेंच का कलर काला है कपड़ों का कलर सफेद है दरवाजे का कलर नीला है सीढ़ियों का कलर सफेद है।

बैनर का कलर ऑरेंज नीला और सफेद दीवार का कलर पर्पल है दरवाजे का कलर नीला --

पानी का कलर हरा है पौधे का कलर हरा है आसमान कलर सफेद और नीला --

का कलर भूरा है रेन का कलर कला है वह खानो का कलर सफेद है और उसपर --

मुझे सामने आसमान का कलर नीला है व्यक्ति कपड़ों का नीला --

बहुत सारा इनमें एक इमारत है जिसका कलर मैरून फर्श का कलर है।

यह कलर सफेद है मशीन का कलर पर्पल और सलेटी है और फर्श का कलर सलेटी है।

और जैसा लेती हुई है सामने रेलिंग इसका कलर काला है और सामने एक व्यक्ति भी है जिसका कलर --

आसमान का कलर सफेद है पेड़ का कलर हरा है बिल्डिंग का कलर सफेद है।

ऑरेंज है और च पर्स का कलर काला है उसका कलर लाल सफेद --

और सामने दूर कलर हरा है चंद्रमा कलर सफेद है।